और यहाँ पर बहुत सारे डब्बा दिखाई दे रहे है बहुत सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है एक टेबल दिखाई दे रही है। पर्पल कलर दिखाई दे रहा--

पेड़ दिखाई दे रहे है आसमान में पत्थर दिखाई दे रहे है कुछ पत्थर पिक ऑरेंज ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है।